और नदी में कुछ काले बैग में भी रखा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं।

कुछ काम करता हुआ उसका देख पा रहे हैं यहाँ पर वो कुछ ऊपर देख पा रहे हैं जिस से वो एक खुले से टंगा हुआ मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर वो काले कलर के --

एक डस्टबिन भी रखा हुआ हम यहाँ पर देख पा रहे है और यहाँ पर बहुत सारे --

और एक लड़की हमें सिंगल बैठे हुई दिख पा रही है एक बेंच पर हम लड़की देख पा रहे है बहुत सारी जो बैठी हुई पेपर दे रही है हम यहाँ पर --

जैसे की अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं यह में एक गेराज का फोटो दिखाया है यहाँ पर हमें एक गाड़ी धुलती है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।

जैसे की अपन यहाँ पर देख पा रहा है यहाँ पर हमें एक नदी का फोटो देख पा रहा है।